और यहाँ पर निचे बैठे हुए हैं बच्चे बच्चों के आगे कागच का कुछ रखा हुआ है बच्चे से रंग-बिरंगी शीट से कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे लाल रंग की दिवार दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

तीन लोहे के डंडे बने हुए दिखाई दे रहें हैं जिनका रंग पीला और काला दिखाई दे रहा है आसमान दिखाई दे रहा है हरे पेड़ दिखाई दे रहें हैं एक गाड़ी खड़ी है गाड़ी के आगे एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई --

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के आस-पास काफी सारी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है ऊपर बहोत सारे बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

यहां रखी हुई दिखाई दे रही है मूर्तियों पे माला चढ़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर घास दिखाई दे रही है सड़क के ऊपर काफी सारी बसें जाती हुई दिखाई दे रही हैं बसों का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।